मिक्स सब्जी और सलाद रखा हुआ है।

ये किनारे-किनारे शीशे की दीवार खड़ी की गई है और एक आदमी वहाँ पर मोमबत्ती जला रहें हैं ।

और वहाँ पर सूर्यास्त्र हो रहा हैं।